उसके पेर पीले दिख रहे हैं।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

यहां पर एक लैपटॉप नजर आ रहा है।

काफी सारे पेड़ लगे हुए हैं।

कुछ साइकिल नजर आ रही है।

कुछ गाड़ियाँ नजर आ रही हैं।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

काफी सारी खिड़कियाँ बनी हुई हैं।

काफी सारी कुर्सियाँ नजर आ रही हैं।

दीवार पर फोटो लगे हुए हैं।

काफी सारे कपड़े टंगे हुए हैं।

इस चित्र में कुछ बिल्डिंग दिख रही है।

एक हमें घास दिख रही है।

जिसने कोट पहना हुआ है।

काफी सारे बादल दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में एक खेत दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में साहिब बंदगी दिख रही है।